और इनकी फिज़िक काफी अच्छी है और वो कहे तो उनको इम्प्रूव कर सकते है बड़ा स्माइलिंग सेफ है उनका और ये जिम की पिक्चर है।

और बहुत सारे बछे अपने सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए है वह पर एक लेड़ी भी खड़ी हुयी है जिनकी साडी का कलर ग्रीन है और चार मेन्स खड़े हुए है पीछे अच्छा सा स्टेज बना हुआ है ब्लैक कलर का।

एक मस्जिद की पिक्चर है जहा पर दो व्यक्ति आपस मे बात कर रहे है खड़े होकर और दो व्यक्ति निचे बेठ हुये है और तीन इनमेसे तीन ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए है और एक ने पिंक कलर की शर्ट पहनी--

इनकी पिक्चर है जहाँ पे काफी मजदूर काम कर रहे है यहाँ पर छत दल रही है और अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए है चाट क कार्य चल रहा है और आसपास के बिल्डिंग भी नजर आ रहे है जीमने प्लास्टर नही किया है।

पिक्चर है जहां पर मजदूर छत का फ्लोर बना र बनाने मे लगा हुआ है।

हिजामा क्लिनिक की पिक्चर है जहा पर पैशन्ट का हिजामा हो रहा है उसके बेक का हिजमा हो रहा है और जो हिजामा डॉक्टर हे वो हिजामा कर रहे है काफी सारे कप्स लगे हुए है।